ये एक मस्जिद है मस्जिद की गुंबद--

ये एक लाइब्रेरी है जहां पर कई तरीके की बुकें रखी हुई है ।

बुक पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और लाइट भी जल रही है ।

ये एक स्टेज है स्टेज पर लाल रंग का कपड़ा बिछा हुआ है उस पर कुछ लोग खड़े हुए हैं उनके हाथ पर माइक है ।

और कुछ किताब रखी हुई है ।

नदी है एक नदी का जल बिल्कुल साफ है नदी के किनारे झाड़ियां हैं ।

ब्लैक कलर की कुर्सी है कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं ।

और कुछ दूर पर एक लड़की जा रही है और आसपास झाड़ियां हैं पेड़ हैं छोटे-छोटे पौधे भी लगी हुए हैं ।

ये एक साइकिल शोरूम है यहां बच्चों की--

कुछ बड़े पेड़ भी हैं दिन का समय भी है ।

इस चित्र में रात का समय है ।

और एक जैन्स है ।

नर्सरी सेक्टर चार द्वारका।

इस चित्र में एक बड़ा सा पंखा है ।

ये एक पार्क है पार्क क्ब के चारों ओर--

ये दिन का समय है जहां एक समुंद्र सा है ।

ईह इस चित्र में लाल रंग की डायरियां हैं ।

ब्राउन कलर का फर्नीचर है उसमें कुछ सामान रखा हुआ है ।

जो हनुमान जी की मूर्ति है उनके गले में फूलों की माला है ।

ग्रे कलर की कार भी है कुछ लोग भी खड़े हुए हैं ।

इस चित्र में कुछ बच्चे लाइन लगा के खड़े हुए हैं ।

और बीच में सड़क है सड़क पर कई लोग जा रहे हैं ।

खेत का चित्र है जहां पर फसल हरी-हरी है ।

और दोनों तरफ फसलें हरी हैं इसके बीच में एक पेड़ लगा हुआ है ।